हमें यहाँ पर डैम दिख रहा है हमें यहाँ पर नीला आसमान दिख रहा है हमें यहाँ पर पानी भी दिख रहा है।

पेड़ पौधे दिख रहे है कुछ मकान दिख रहे है सफेद कलर के हमें कुछ पहाड़ भी दिख रहे है।

हमें यहाँ पर बहोत सारी अ लकड़ियाँ दिखाई दे रही है पहाड़ दिखाई दे रहे है।

हमें यहाँ पर बहुत बड़ा समुंदर दिखाई दे रहा है हमे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कचरा भी दिखाई दे रहा हैं।

हमे यहाँ पर घास भी दिख रही है हमे यहाँ पर बोहोत सारा पानी दिख रहा है काइ दिख रही है हमे यहाँ पर नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

हमे यहाँ पर एक रोड दिख रहा है बहोत सारी गाड़ियां दिख रही है हमे यहाँ पर एक घर दिख रहा है ब्लू कलर का।

हमें यहाँ पर बहोत सारे बादल दिखाई दे रहे है आसमान दिखाई दे रहा है और पेड़ पौधे --